यहाँ बांद काम चल रहा है यहाँ पे भी जि_सि_बी आई हुई है।

वहां पे छोटे छोटे पाइप भी है और बड़े बड़े भी पाइप है यहां पे व्हाइट कलर का शटर भी लगा हुआ है यहां पे बम्बू लगे हुए हैं।

पौधे लगे हुए हैं यहां पे एक मेन गेट है मेन गेट के ऊपर एक कुछ वाइट लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारी दुकानें हैं यहां पे गैरेज की दुकान भी है सब दुकाने यहां पे ब्लू कलर की छे और शटर पे ब्लू कलर --

जहां से एक वाइट कलर की छोटी सी कार जा रही है।

एक ब्लू कलर के बिल्डिंग पर एक लड़की की फोटो है जिसका मुंह नहीं दिखाया गया--

वहां पे एक दुकान भी है वहां पे एक खंबा है जिसमें वाइट्स है।

और यहां पे बहुत सारे लोग चेयर पे बैठे हुए हैं और एक वहां पे वाइट टोपी पहने हुए वाइट कपड़े पहने हुए--

ये एक जंगल है जहां पे बहुत सारी घनी झाड़ियां हैं।

एक सूखा झाड़ है जिस पे एक चिड़िया बैठी हुई है।

एक बच्चे का मुंह पूरा पानी के अंदर है और एक बच्चे का मुंह यहां पे दिखाया नहीं गया--

ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं फादर्स ने गोल्डन एंड रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

जो बीच में फादर बेठा है उसके सिर पर कुछ ताज है।

अलग-अलग किस्म की सजावटें की गई है और प्लस का फादर की कैंडल का भी इंतजाम है।

जो वहां पे देख रहे हैं एक लेडी भी बैठी हुई है यहां पे और एक लेडी बैठी है जो वो भी नीचे ही देख रही है।

अलग अलग किस्म के आईने रखे हुए हैं।

की ऊपर एक सबसे बड़ा नंबर वन है नं उससे छोटा है नंबर टू --

गोल कलर का गोल शेप का है बाकी सब चौकोंन शेप के हैं।

है यहां पे एक पंखा भी लगा हुआ है कूलर के उधर पे--

झाड़ियां है बड़े बड़े दीरख्त हैं दूर दूर पे अलग अल--